और काफी सारी मालाएं लटकी हुई हैं फूलों की और एक हाथ में मुरली पकड़ के हाथों में चूड़ी पहन रखी--

काफी सारी लाइटें दिखाई पड़ रहे हैं बहोत सारे आदमी दिखाई पड़ रहे हैं।

कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं आसमान दिखाइ पड़ रहा खंभे दिखाई पड़ रहे--

बहोत सारा जो है फूल लगे हुए हैं बहोत सारे पेड़ पौधे लगे हुए बगीचा दिखाई पड़ रहा है।

और यह एक पार्क दिखाई पड़ रहा है जिसमें एक फ्लावर पॉट रखा हुआ है काफी सारी घास वाली डिजाइने बनी हुई है।

ये एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है जिसके पास में शीशे वाली विंडो लगी हुई है।